लिनक्स में वर्किंग विथ रेग्यूलर फाइल्स पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
फाइल्स और डाइरेक्टरिस मिलकर लिनक्स फाइल सिस्टम को बनाती हैं
पिछले ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि डाइरेक्टरी में कैसे कार्य करें
आप इस वेबसाइट पर ट्यूटोरियल पा सकते हैं
इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेग्यूलर फाइल्स को कैसे संभालें
हम पहले से ही अन्य ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि हम कैट कमांड का उपयोग करके फाइल कैसे बना सकते हैं
विवरण के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ
देखते हैं कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी करें
इसके लिए हमारे पास सीपी कमांड है
देखते हैं कि कमांड का उपयोग कैसे करें
सिंगल फाइल कॉपी करने के लिए हम टाइप करेंगे सीपी स्पेस एक या अधिक OPTION स्पेस सोर्स फाइल का नाम स्पेस गंतव्य फाइल नाम डेस्ट
उसी समय कई फाइल्स को कॉपी करने के लिए हम लिखेंगे सीपी स्पेस एक या अधिक OPTION सोर्स फाइल्स का नाम जो हम कॉपी करना चाहते हैं और गंतव्य डायरेक्ट्री का नाम जिसमें यह फाइल्स कॉपी होंगी
चलिए एक उदाहरण देखते हैं पहले हम टर्मिनल खोलते हैं
हमारे पास पहले से ही homeanirbanarc में टेस्ट1 नामक फाइल है
देखने के लिए कि टेस्ट1 में क्या है हम कैट टेस्ट1 करेंगे और एंटर दबायेंगे
टेस्ट1 में दिखाये गए कन्टेंट को हम देख सकते हैं अब यदि हम इसे टेस्ट2 नामक अन्य फाइल में कॉपी करना चाहते हैं
हमें सीपी टेस्ट1 टेस्ट2 लिखना होगा और एंटर दबाना होगा
अब फाइल कॉपी हो गई है
यदि टेस्ट2 मौजूद नहीं है तो यह पहले बनानी होगी और फिर टेस्ट1 का कन्टेंट इसमें कॉपी करना होगा
यदि यह पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जायेगा
कॉपी की गई फाइल को देखने के लिए कैट टेस्ट2 टाइप करें और एंटर दबायें
आप फाइल्स को भिन्न डाइरेक्टरिस से और भिन्न में भी कॉपी कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप सीपी homeanirbanarcdemo1जो कि फाइल का नाम है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं homeanirbandemo2 टाइप करें और एंटर दबायें
यह क्या करेगा कि यह फाइल डेमो1 को सोर्स डाइरेक्टरी homeanirbanarc से गंतव्य डाइरेक्टरी homeanirban में कॉपी करेगा यह डेमो2 नाम से फाइल कॉपी करेगा
यह देखने के लिए कि डेमो2 यहाँ है एलएस स्पेस homeanirban टाइप करें और एंटर दबायें
हमारे ऊपर स्क्रोल करते ही आप देखेंगे कि डेमो2 यहाँ है
आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें
यदि आप गंतव्य डाइरेक्टरी में फाइल का वही नाम रखना चाहते हैं आप फाइल के नाम का भी उल्लेख नहीं कर सकते
उदाहरणस्वरूप सीपी homeanirbanarcdemo1 homeanirban टाइप करें और एंटर दबायें
यह फिर से डेमो1 फाइल को homeanirbanarc डाइरेक्टरी से homeanirban डाइरेक्टरी में अच्छी तरह से डेमो1 फाइल नाम के साथ कॉपी करेगा
डेमो1 को देखने से पहले lshomeअनिर्बाण टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ फिर से हम ऊपर स्क्रोल करना होगा और आप देख सकते हैं कि डेमो1 फाइल यहाँ है
फिर से आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें
एक और उदाहरण तब हमें गंतव्य फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं होती जब हम कई फाइल कॉपी करना चाहते हैं
हम मानते हैं कि हमारे पास हमारी होम डाइरेक्टरी में टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3 नामक तीन फाइल्स हैं
अब हम सीपी टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3 homeanirbantestdir टाइप करेंगे
और एंटर दबायेंगे
यह बिना इनके नाम बदले सभी तीनों फाइल्स test1टेस्ट2 और टेस्ट3 को homeanirbantestdir डाइरेक्टरी में सेव करेगा
आप देखेंगे कि यह फाइल्स वास्तव में कॉपी की गई हैं
हम एलएस homeanirbantestdir टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं test1टेस्ट2 और टेस्ट3 डाइरेक्टरी में मौजूद हैं
यहाँ सीपी में कई विकल्प हैं
यहाँ हम उनमें से केवल अति महत्वपूर्ण ही देखेंगे
पहले स्लाइड्स पर वापस जायेंगे
विकल्पों में केपिटल र एक महत्वपूर्ण हैयह एक पूर्ण डाइरेक्टरी संरचना की पुनरावर्ती कॉपी का कारण बनता है
एक उदाहरण देखते हैं
टेस्टडिर डाइरेक्टरी के सभी कन्टेंट को testनामक डाइरेक्टरी में कॉपी करने का प्रयास करें
उसके लिए हमें सीपी टेस्टडिर टेस्ट टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा
जैसा कि आप आउटपुट मैसेज से देख सकते हैं
साधारणतः हम कुछ कन्टेंट के साथ डाइरेक्टरी को सीपी कमांड से कॉपी नहीं कर सकते
लेकिन R ऑप्शन का उपयोग करके हम यह कर सकते हैं
अब हम सीपी R टेस्टडिर टेस्ट टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
फाइल्स अब कॉपी हो चुकी है यह देखने के लिए कि टेक्स्ट डाइरेक्टरी वास्तव में मौजूद हैls टाइप करें और एंटर दबायें
जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट डाइरेक्टरी मौजूद है
स्क्रीन को साफ करें
टेस्ट के अंदर कन्टेंट देखने के लिए एलएस टेस्ट टाइप करें और एंटर दबायें
आप टेस्ट डाइरेक्टरी का कंटेंट्स देख सकते हैं
अब हम वापस स्लाइड्स पर चलते हैं
हमने देखा यदि फाइल अन्य फाइल में कॉपी होती है जो कि पहले से ही मौजूद है तो मौजूदा फाइल अधिलेखित होती है
अब क्या यदि हम एक महत्वपूर्ण फाइल को अनजाने में अधिलेखित करते हैं
ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमारे पास केपिटल b ऑप्शन है
यह प्रत्येक मौजूद फाइल का बैकअप बनाता है
हम i ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं
यह हमें हमेशा किसी भी गंतव्य फाइल को अधिलेखित करने से पहले चेतावनी देता है
अब देखें कि एमवी कमांड कैसे कार्य करती है
इसका उपयोग फाइल्स के स्थानांतरण के लिए किया जाता है
अब देखते हैं कि यह कैसे उपयोगी है
इसके दो मुख्य उपयोग हैं
इसका उपयोग फाइल या डाइरेक्टरी को फिर से नाम देने के लिए किया जाता है
यह फाइल्स के समूह को विविध डाइरेक्टरी में स्थानांतरित भी करती है
एमवी सीपी के समान है जो हम पहले ही देख चुके हैं
अतः जल्दी से देखते हैं कि एमवी का उपयोग कैसे किया जा सकता है
हम टर्मिनल खोलते हैं और एमवी टेस्ट1 टेस्ट2 टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं
यह टेस्ट1 नामक फाइल को नया नाम देगा जो फाइल टेस्ट2 नाम से होम डाइरेक्टरी में पहले से ही मौजूद है
यदि टेस्ट2 पहले से ही मौजूद है तो यह अपने आप अधिलेखित हो जायेगी
यदि हम फाइल के अधिलेखित होने से पहले चेतावनी चाहते हैं
हम एमवी कमांड के साथ i ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं
मानते हैं कि हमारे पास अनिर्बाण नामक दूसरी फाइल है
इस फाइल का भी हम टेस्ट2 के रूप में नवीनीकरण करना चाहते हैं
हम एमवी i अनिर्बाण टेस्ट2 टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
जैसा कि आप देख सकते हैं चेतावनी दी जा रही है कि क्या टेस्ट2 अधिलेखित होनी चाहिए या नहीं
यदि हम य दबाते हैं और फिर एंटर दबाते हैं तो फाइल वास्तव में अधिलेखित हो जायेगी
हम विविध फाइल्स के साथ सीपी के जैसे एमवी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इस केस में गंतव्य डाइरेक्टरी होना चाहिए
आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें
मान लीजिए कि हमारे पास हमारी होम डाइरेक्टरी में abcटीएक्सटी popटीएक्सटी और pushटीएक्सटी नामक तीन फाइल्स हैं
उनकी मौजूदगी को देखने के लिए एलएस टाइप करें और एंटर दबायें
फाइल्स poptxtpushटीएक्सटी और abcटीएक्सटी यहाँ हैं स्क्रीन को साफ करें
अब हम इन तीन फाइल्स को टेस्टडिर नामक डाइरेक्टरी में स्थानांतरित करना चाहते हैं
हमें क्या करने कि जरूरत है कि एमवी abcटीएक्सटी popटीएक्सटी pushटीएक्सटी और फिर गंतव्य फोल्डर का नाम टाइप करें जो कि टेस्टडिर है और एंटर दबायें
उनको देखने के लिए एलएस टेस्टडिर टाइप करें और एंटर दबायें
आप फाइल्स एबीसी पॉप और pushटीएक्सटी देख सकते हैं
अब एमवी में कुछ ऑप्शन्स देखते हैं पहले स्लाइड्स पर वापस चलते हैं
एमवी कमांड में b या -backup ऑप्शन उपलब्ध हैं
यह प्रत्येक फाइल्स के अधिलेखित होने से पहले इन्हें गंतव्य में बैकअप करेगा
i ऑप्शन जिसे हमने पहले ही देखा किसी भी गंतव्य फाइल के अधिलेखित होने से हमें पहले चेतावनी देता है
अगली कमांड जो हम देखेंगे वह आरएम कमांड है
इस कमांड का उपयोग फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है
टर्मिनल पर वापस जायें और एलएस टेस्टडिर टाइप करें
हम faqटीएक्सटी नामक मौजूद फाइल को देख सकते हैं
मान लीजिए कि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं
इसके लिए हम आरएम testdirfaqटीएक्सटी टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
यह कमांड faqटीएक्सटी फाइल को testdir डाइरेक्टरी से हटा देगी
यह देखने के लिए कि फाइल वास्तव में हट गई है या नहीं
फिर से एलएस टेस्टडिर टाइप करें और एंटर दबायें
हम अब फाइल faqटीएक्सटी नहीं देख सकते
हम आरएम कमांड को विविध फाइल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं
टेस्टडिर डाइरेक्टरी में दो फाइल्स हैं एबीसी2 और एबीसी1 मानिये कि हम एबीसी1 और एबीसी2 फाइल्स को हटाना चाहते हैं
इसके लिए हम आरएम testdirएबीसी1 testdirएबीसी2 टाइप करेंगे और एन्टर दबायेंगे
यह एबीसी1 और एबीसी2 फाइल्स को टेस्टडिर डाइरेक्टरी से हटा देगा
यह फाइल्स हटी हैं या नहीं देखने के लिए फिर से एलएस टेस्टडिर टाइप करें
एबीसी1 और एबीसी2 फाइल्स नहीं हैं
आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें
अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
चलिए सारांशित करते हैं हमने अभी जो कहा
वो यह कि एक फाइल को डिलीट करने के लिए हम आरएम लिखते हैं और फिर फाइल का नाम
विविध फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम आरएम लिखते हैं और उन विविध फाइल्स का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं
अब आरएम कमांड के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं
कभी कभी फाइल सुरक्षित होती हैं जो आरएम का उपयोग करके भी डिलीट नहीं होती हैं
इस केस में हमारे पास f ऑप्शन है जिसका उपयोग फाइल को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है
अन्य सामान्य ऑप्शन है r ऑप्शन
चलिए देखते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ उपयोगी है
टर्मिनल पर वापस जाते हैं
डाइरेक्टरी डिलीट करने के लिए सामान्यतः आरएम कमांड का उपयोग नहीं करते हैं उसके लिए हमारे पास रामदीर कमांड है
लेकिन रामदीर कमांड साधरणतः डाइरेक्टरी डिलीट करती है उसके बाद ही वह रिक्त होती है
यदि हमें एक डाइरेक्टरी डिलीट करनी है जिसमें कई फाइल्स और उप डाइरेक्टरी मौजूद है तो हम क्या करें
आरएम कमांड से इसके करने की कोशिश करते हैं
आरएम और डाइरेक्टरी जो हम डिलीट करना चाहते हैं जो है टेस्टडिर टाइप करते हैं और एन्टर दबायें
आउटपुट मेसेज से हम देख सकते हैं कि हम टेस्टडिर को डिलीट करने के लिए आरएम डाइरेक्टरी का उपयोग नहीं कर सकते
लेकिन यदि हम r और f ऑप्शन जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं
आरएम rf टेस्टडिर प्रेस करें और फिर एन्टर दबायें
अब टेस्टडिर डाइरेक्टरी सफलतापूर्वक डिलीट हो चुकी है
अगली कमांड के अध्ययन के लिए स्लाइड्स पर वापस जाएँ
सीएमपी कमांड
कभी कभी हमें यह जाँचने की आवश्यकता होती है कि क्या दो फाइल्स समान हैं
यदि वे समान हैं तो हम उनमें से एक डिलीट कर सकते हैं
और हम देखना चाहते हैं कि क्या पिछले वर्जन से फाइल बदल गई है
इनके और कई अन्य उद्देश्यों के लिए हम सीएमपी कमांड का उपयोग कर सकते हैं
यह दो फाइल्स की बाइट दर बाइट तुलना करती है
फाइल1 और फाइल2 की तुलना करने के लिए हमें सीएमपी फाइल1 फाइल2 लिखना होगा
यदि दो फाइल्स में पूर्ण रूप से समान कंटेंट है तो कोई भी मैसेज नहीं दिखाया जायेगा
केवल प्रोम्प्ट मुद्रित होगा
यदि उनके कंटेंट्स में भिन्नता है तो टर्मिनल पर पहले बेमेल का स्थान मुद्रित होगा
देखते हैं सीएमपी कैसे कार्य करता है
हमारे पास हमारी होम डाइरेक्टरी में सैंपल1 और सैंपल2 नामक दो फाइल्स हैं
देखते हैं उनमें क्या है
कैट सम्पे1 टाइप करें और एंटर दबायें
इसमें थिस इस आ लिनक्स फाइल टो टेस्ट थे सीएमपी कमांड टेक्स्ट है
अन्य फाइल सैंपल2 में टेक्स्ट होगा और इसको देखने के लिए हम कैट सैंपल2 टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
इसमें थिस इस आ यूनिक्स फाइल टो टेस्ट थे सीएमपी कमांड
टेक्स्ट होगा
अब हम सीएमपी कमांड को इन दो फाइल्स पर लागू करेंगे
हम सीएमपी सैंपल1 सैंपल2 लिखेंगे और एंटर दबायेंगे
जैसा कि हम देख सकते हैं कि सैंपल1 और सैंपल2 दो फाइल्स में पहला अंतर बताया गया है
अगली कमांड पर जाने से पहले स्क्रीन को साफ कर दें
अगली कमांड जो हम देखेंगे वह है डबल्यूसी कमांड
इस कमांड का उपयोग फाइल में लाइन्स शब्द और अक्षरों की संख्या की गणना के लिए किया जाता है
हमारे पास हमारी होम डाइरेक्टरी में सैंपल3 नामक फाइल है
इसके कंटेंट को देखने के लिए हम कैट सैंपल3 टाइप करेंगे और एंटर दबायेंगे
सैंपल3 का कंटेंट यह है
अब इस फाइल पर डबल्यूसी कमांड का उपयोग करते हैं
इसके लिए हम डबल्यूसी सैंपल3 लिखेंगे और एन्टर दबायेंगे
कमांड दर्शाती है कि उस फाइल में 6 लाइन्स 67 शब्द और 385 अक्षर हैं
ये कुछ कमांड्स थी जिन्होंने हमें फाइल्स के साथ कार्य करने में मदद की
यहाँ कई सारी कमांड्स हैं
इसके अलावा प्रत्येक कमांड जो हमने देखी उसमें कई अन्य ऑप्शन्स हैं
मैं आपको मन कमांड का उपयोग करके उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद